और चार पांच झन नीला रंग का टी शर्ट पहिने हे।

और सफेद कलर का टाइस है नीचे में और बड़ा -बड़ा टाइस हैं ।

मुझे इस तस्वीर में एक इशकुल दिख रहा हो बहुत ही बड़ा है।

और हरा कलर का और हल्दी कलर का कत्था कसन दिख रहा हैं ।

मुझे इस तस्वीर में बहुत ही बड़ा का पहाड़ दिख रहे हो और --

और आगे में हल्का -हल्का काई जैसा जमा हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक मॉल जैसा दिख रहा हैं।

और दो तीन ठो कुर्सी है सब काला रंग का --

रात का समय है चारो तरफ़ लाइट दिख रहा है और बहुत ही सुन्दर दिख रहा है।

पानी बहुत अच्छा दिख रहा है।